और उसमें आसपास के पेड़ और चट्टानों की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है।

मैदान धूल भरा है और उसके किनारे पर एक बाउंड्री दिख रही है।